बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई है एक वायर भी दिख रहा है और बहुत सारी लाइट जल रही है।

और एक लड़की ने येलो पिंक पहन रखा है और एक ने रेड पहन रखा है लाइट भी दिख रही है एक मौखी भी दिख रही है।

बहोत बड़ी गेट भी दिख रही है एक आदमी के सिर पे बाल भी नहीं है।

हमें यहां एक बड़ा सा किला दिखाई दे रहा है और एक बाइक उसके बाहर खड़ी है कुछ ईंटे पड़ी हुई है।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

बी से एक बाइक दिख रही है हेलमेट पहने हुए आदमी दिख रहे हैं कुछ पीछे कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।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

और बहुत ही बड़ा हॉल है जिसके अंदर बहुत सारे आदमी बहुत सारे मोटरसाइकिल बना रहे है बहुत सारे लाइटें लगा रहे है बहोत सारे --

और मन तो एक पूल भी दिखे और दो भी दिखे तीन भी दिखे चार भी दिखे और बहुत सारे पेड़ दिख रही हैं सामने बहुत सारा पानी भी दिख रहा है।

और बहुत सारे गमले दिख रहे हैं जिसके अंदर आदमी पेड़ पौधे लगा रहे हैं बना रहे हैं।

बहोत ही बड़े-बड़े ब्लॉक लगाए हुए है एक बाइक भी दिख रही है एक पेड़ के नीचे बाइक और खड़ी हुई है बहोत बड़ी-बड़ी पेड़ लगाए हुए है एक --

हेयर ड्रायर दिख रहा है ये समान दिख रहा है पाउडर दिख रहा है बहुत बड़ा-बड़ा समान दिख रहा है और बहुत ही कुछ दिख रहा है।

बहुत सारे दिख रहे हैं बहुत सारे दिख रहे हैं एक दुकान दिख रही है।